इसके नीचे छोटे अक्षरों में कुल्लड्ड द कुल्हड़ और सिक्स हंड्रेड टू लिखा हुआ है।

लटकी हुई लाइटें और काउंटर पर मौजूद सजावट एक अनोखा और आकर्षक वातावरण बनाती है।

पानी ऊंची चट्टानों से नीचे गिर रहा है और एक शक्तिशाली धारा बना रहा है।

जैसे नीली पीली हरी आदि।

पर एक छोटा सा काउंटर भी है जहां शायद आर्डर किया जाता होगा।

मैदान के चारों ओर हरे भरे पेड़ है जो एक सुखद वातावरण बनाते हैं।

यह छवि किसी रेस्टोरेंट के अंदर का दृश्य दिखा रही है।

दुकान में विभिन्न प्रकार की साइकिले जैसे माउंटेन बाइक रोड बाइक और हाइब्रिड बाइक अच्छी तरह से प्रदर्शित की गई है।

डेस्क के सामने दो कुर्सियां रखी हुई है।

छवि में एक कार वॉशिंग सेंटर की अंदर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

कार के पहिए हवे में है और उसके नीचे का हिस्सा साफ दिखाई दे रहा है।

हाथी का सूंड़ थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और उसके दांत दिखाई दे रहे हैं।

इसके दीवारों पर नोटिस और पोस्टर लगे हुए हैं।

दुकान की दीवारें नीले रंग की हैं।

हां कई लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो चल रहे हैं और कुछ बैठे हुए हैं।

यहां पर कई लोग घूमने आए हुए हैं।

छवि में एक अपार्टमेंट कोंपलेक्स या होटल का गलियारा दिखाई दे रहा है।

छवि में एक बड़े कमरे का आंतरिक दृश्य दिखाई दे रहा है जो संभवतः किसी अस्पताल या सरकारी कार्यालय का प्रतीक्षा कक्ष या रिसेप्शन क्षेत्र हो सकता है।